दे रही और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं | मल्‍टीकलर का हो रहा है | बहुत सारे जेन्‍ट्स लेडीज दिखाई दे रही हैं ।

आसमान भी दिखाई दे रहा व्‍हाईट कलर का दिख रहा है ।

एक लड़का खड़ा हुआ है और --

और एक मकान पे छत ढल रहा है तीन जन दिखाई दे रहे हैं।

उसमें नेट बंधी हुई है ।

लाल कलर पीले कलर का पेंट हो रहा है बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

जंगल में पत्‍थर भी दिख रहे ब्लैक कलर के छोटे छोटे भी दिखाई दे रहे |

दिखाई दे रहा | बहुत सारे जेन्‍ट्स भी दिखाई दे रहे हैं | बड़े दिख रहे --

मकान दिखाई दे रहा है | मकान में व्‍हाईट कलर का पेंट हो रहा है ।

अंदर वाइट कलर का पेंट हो रहा है और पीले कलर का भी हो रहा है कवर भी दिखाई दे रहा है बोह --

है और व्‍हाईट कलर का पेंट हो रहा है बोह --

हुआ है और महरून कलर का व्‍हाईट कलर का पेंट हो रहा है | नीचे लोहे का शटर लगा हुआ है | नीले --

एक हॉल दिखाई दे रहा हॉल में व्‍हाईट कलर गोल्‍डन कलर का पेंट हो रहा है और --

दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं। हरे-हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --